आती है तैयार होने के लिए यहां पर एक वाइट कलर की गाड़ी खड़ी है मिस्त्री गाड़ी को तैयार कर रहा है।

ये एक पार्क है पार्क में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

व्यवस्था है खड़ी रहने की यहां पर बहोत ही गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक आदमी पार्क में बाहर खड़ा है एक लड़का बैठा है।

यह हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज की बेड लगी हुई है।

और यहां पर धूप भी है और यहां पर बहुत ही लोग आते हैं यहां पर जिम वगैरह करने के लिए भी लोग आते हैं।

कुछ जूस की जूठी गिलासे पड़ी है बोतले रखी हुई हैं कुछ डिब्बे भी रखे हुए हैं दीवार पर बहोत ही अच्छा पेंट किया हुआ है।

यह रेलवे स्टेशन बहोत ही बड़ी है यहां पर बहोत सारे के चेयर्स लगी हुई है लोगों की बैठने की व्यवस्था है।

यह एक कपड़ों के शोरूम है यहां पर लेडिस के बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियां --

ये एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट बहोत बड़ा है रेस्टोरेंट के अंदर--

ये पुल है पुल के नीचे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रही है एक महिला भी खड़ी है।

और यहां पर बोर्ड लगा हुआ है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और पटरी के सामने एक ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

आर_एल_डी स्कूल यहां पर योगा करवा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे--

यहां पर कुछ लोग खडे हुए दिखाई दे रहे है स्टेशन पर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।